यहाँ पे बडी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर में यहाँ पे एक दो आदमी दिखाई दे रहे है जो बैठे हुए और कुछ खड़े हुए है।

ऑरेंज कलर का लग रहा है और इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है एक स्कूटी का यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर का है।

पे दूर दूर में यहाँ पे पानी दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक शेड बना हुआ है जहा पे पानी की और नहीं जा सकते है।